बहोत सारे ग्रीन ग्रीन ग्रीन पेड़ दिखाई दे रहे है इमेज के फ्रंट में ही लेफ्ट साइड में और एक गुफा से झांक रहे है टाइप का व्यू दिख रहा है।

नीचे जब जा रहे हैं तो पानी मटमैला सा ग्रीनीश कलर में मस्त दिख रहा है।

मैं एक इमेज शो देख रही हूं जिसमें राईट साईड में बाउंड्री वॉल हैं ब्राउन कलर का उसके अंदर में व्हाईट कलर का घर दिखाई दे रहा है।

ट्रीस दिखाई दे रहे हैं बहुत बड़े बड़े ग्रीन कलर के और आगे में झूला दिखाई दे रहा है ये पार्क है।

कुछ प्रोडक्ट्स रखे हुए है क्रीम फोम में--

नीचे येलो कलर के कुछ खंबे बने हुए हैं जिसमें लाइट्स दिख रही है और इसमें फ्लावरी प्रिन्ट बना हुआ है कुछ लाइट्स लगे हुए है जिनका--

और इस रूम का कलर है वाइट और जो चक्र बना है उसके बगल में ग्रीन ओर येलो कलर की पट्टी बनी हुई है।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

एक इमेज को देख रही हूं मैं जिसमें एक लड़की डांस कर रही है ब्लैक कलर का टॉप पेहनी है रेड कलर का स्कर्ट जिसमें की वाइट व्हाइट कर के डिजाइन बना--

एक इमेज को देख रहे हैं जिसमें लिखा है द सोशल ढाबा ।

और उस उसकी फोटो छुपा दी गई है।

बाहर में बहोत सारे लोग खड़े है और निकाल--

और ये ऊपर से यहां पे वॉटरफॉल आ रहा है जो कि तीन तीन तक तीन तरीके से नीचे आ रहा है पानी यहां पे ब्लैकिश टाइप का दिख रहा है।